कुछ फूल रखे हैं पीले कुछ बोतल है कुछ स्कैनर हैं और--

उस मकान के बाहर कुछ पेड़े हैं एक पाइप है डस्टबिन है और--

एक मोजी का रूम हैं वहां पे कुछ लोग दो लोग हैं।

कि कुछ इससे इसके साथ इस कंकाल के साथ एक्सपीरियंस चल रही है।

एक इस पिक्चर में एक लड़की है।

उस पानी में एक तालाब के अंदर और बैठा हुआ है एक खड़ा है उस तालाब मे और उधर कुछ दूरी पे कुछ और भी लोग है।